यह ऊ ऊ मार्केट का सीन है जिसका रोड पर बहुत सारे गाड़ी चल रहे हैं। एक और लड़का स्कूटी से लाल कलर के कपड़ा पहने हुए --

कार पार्क हैबहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं बगला व--